यह एक शिव मंदिर है और यहां पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जा रहा है और --

पैसे निकालने के लिए लाइन लगा रखे है और सब लोगों को पैसा चाहिए और ए_टी_एम से पैसा निकालते हैं।

यह एक सेमिनार हॉल है यहां पे एक फंक्शन हो रहा है जिसमें बच्चे भी है और बहुत सारे लोग हैं।

एस_एस कार की दुकान है और उसके का ए दुकान के पास दो का एसा कार भी खड़ी है और एक बाइक भी है और --

यह एक छोटा सा किराना स्टोर है यहां पे डर्मी कूल पाउडर है।

लाइब्रेरी है यहां पे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और टेबल पे किताब रखी हुई है और बहोत सारी कुर्सियां है यहां पे --

सिक्योरिटी गार्ड पब्लिक खड़ी हुई है और बाहर की तरफ बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी हुई है।

यह एक रिपेयरिंग सेंटर की दुकान है जहां पे बाइक की रिपेयरिंग की जाती है दुकान का नाम भाटी बाइक रिपेयरिंग सेंटर है।

यहां पे एक ऑटो खड़ा है और पास में कुछ बाइक वगैरह खड़ी हैं और एक दुकान भी है पास में।

ये एक फंक्शन का बड़ा सारा पोल है और इसको अच्छी तरीके से सजाया गया है चारों तरफ --

यह एक फल फ्रूट और सब्जियों की दुकान है यहां पे बहुत सारे तरबूज है रखे हुए है।

रनिंग कर सकते हैं उस मशीन पे दौड़ सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और यहां पे लोग जिम करने आते हैं।

बड़ी सारी लाइट है जो ग्राउंड को रोशनी दे रही है और ग्राउंड चारों तरफ से --